कुछ ऑटो दिखाई दे रहे है कुछ कही फोर व्हीलर है कही पर बाइक है कोई बाइक चला रहा है कुछ घर दिखाई दे रहे है।

यहा पर एक बिल्डिंग जैसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे फोरवीलर्स है पेड़ दिखाई दे रहे है।

वो आइडिया लिखा हुआ है एक पायदान दिखाई दे रहा है शॉप के अंदर एक कम्प्युटर दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक पेट्रोल पंप है जिसपर कुछ लोग पेट्रोल भर रहे है एक ऑटो में भी पेट्रोल भरा जा रहा है।

एक टोकरी राखी हुई है टोकरी में भी फ्रूट्स रखे हुए है यहाँ पर अंगूर केले सेफ मोसम्बी ऐसे अलग अलग फ्रूट्स रखे हुए है।

यहा बहुत बड़ा हॉल है जो की सजाया गया है। बहुत सारे लोग है। बहुत सारे व्हाइट चेयर डाली हुई है। एक चार्ट लगाया गया है। बहुत सारे बल लगाए हुए है।

एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है थोड़ा आसमान दिखाई दे रहा है।

यह एक पार्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमे बैठने के लिए सुविधा की गई है बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहै है आसमान दिखाई दे रहा है।

एक प्लेट में राईस और चिकन चिकन ऐसा चिकन बिर्याणी दिख रही है कुछ ग्लासेस रखे हुए है।

सामने के बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग पर लिखा हुआ है ट्विल्ल्स बाहर में कुछ बाइक दिखाई दे रहे है एक लड़का है जो बाइक चला रहा है।

सामान में फिश मॅगी बूस्ट बोर्न विटा ऐसे अलग अलग सामान दिखाई दे रहा है।